अं बहुत बड़ी दुकान दिखाई दे रही है।

बहोत सारी मोटरसाइकल भी सकुटरी भी खड़ी है और एक गाड़ी भी खड़ी दिखाई दे रही हैं।

यहां ऐसा कुछ मेला भरा हुआ है।

इसमें चिड़ि बल्ला और बॉल और भी बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

एक गोलधारा सा भी बना हुआ है।

बहोत सुंदर घर दिखाइ दे रहा है और गमले से भी नजर आ रहे--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

और वहाँ पंखा भी लगा हुवा हैं।

यहां बहुत सारे सामान दिखाई दे रहा है।

विजय पुस्तक भंडार दिखाई दे रहा है।

यहां सारा समान घरेलु मिलता है।

गमले भी दिखाई दे रहें हैं।

बहोत सारे औजार रखे हुए हैं।

यहां बड़े बड़े पुल दिखाई दे रहे हैं।

दे री है बड़े बड़े बोरर्ड भी लगे हुए है।

और बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है।